पौधे लगाए हुए हैं जो कि भुट्टे की है और खेत में कोई पब्लिक नहीं दिख रही है कोई भी नहीं है आजू बाजू में काफी सारे पेड़ है।